खत हावय धान हवय बोरी हवय पेड़ दिखत हे भुइँया दिखत हे लाइट दिखत हे ट्रेक्टर दिखत हे मशीन दिखत हे लइट दिखत हे बोरा दिखत हे आदमी दिखत हे।

पहाड़ दिखत थे पेड़ दिखत थे जहाज़ हे पानी जहाज़ अतिथि मन गोठियात थे मोबाईल हे गाड़ी हे घर हे।

बिल्डिंग हे दुकान हे अति झ मन देखे गे हे।

मंदिर है पेड़ है। पूजा करेला।

ऐ अति झी मन हावे खम्बा हे गाड़ी हे कूलर हे पंखा हे टी_वी हे लाइट हे जहाज़ हे।

कोर खंभा है ईईइ लाइट --

ए हा हॉस्पिटल ए गोली दवाई देते अति झिन मन हावय डॉकटर हे सूजी देथे।

मंदिर है एमा अति झीन मन जाथे गाड़ी हे फइका हे मूर्ति हे भगवान हे नारियल चघत हे दूध चघत हे फुल चघत हे।

मंदिर हे पूजा करत हे पंडित मन नारियल चघात हे फूल चघात हे दूध चघात हे दीया हे बाती हे।

गाड़ी हे घर हे सब कोई जाथे इहा ला टावर खंबा हे खम्भा--

पंखा हे कूलर हे बादल हे पेड़ हे खिड़की हे दरवाजा हे अति झीन मन गए हावय ।

अतिक अति झिमन खेले अथे बादल हे पेड़ हे घर हे ते बढ़ मैदान हे अति झिमन खेले जाथे ह्मू मन जथन खेले ला--